कुर्सी पर बैठे हुए मेज पर और इधर में कुछ नजर आ रहे हैं। एक बच्चा गुब्बारे के बगल में खड़ा है।